और उसके जस्ट पास में एक बड़ा सा पेड़ है।

मोटरसाइकिल के पास में पेट्रोल भरने की मशीन है।

और उसके आमने सामने पेड़ है बहुत सारे।

वहां पर पाठशाला छोटे-छोटे पेड़ है और पेड़ के पास में बहुत लंबे-लंबे पेड़ है।

लाइट के सामने बहोत सारी मशीन है।